बैठने के लिए सोफे लगे हैं ऊपर यहां पर झूमर लगे हुए हैं नीचे कारपेट बिछा है।

लोगो ने हाथों में समान पकड़ा हुआ बहोत सारा--

ये एक कमरा जैसा है जहां बहोत सारा समान पड़ा हुआ है।

अ जैसे की और भी पैकेट पड़े बिस्कुट के हैं।

और भी बहोत सवारा समान फेविकोल पड़ा है पेन जैसे टंगे हुए हैं।

और एक काले रंग की कुर्सी जैसी है।

हनुमान जी के फोटो पर हार चढ़े हुए हैं।

एक लाल रंग का लहंगा जैसा बना है जो की--

जमीन पर लाल रंग की टाइल्स बिछी हुई है।

और भी बहुत मिठाइयां साइड में पड़ी हैं काजू कतली।

ये एक मैरिज हॉल जैसा है।

कुछ परफ्यूम की डब्बियां हैं जैसे फोग की डब्बी दिख रही है।